इस रेस्टोरेंट में काफी सारे चेयर और टेबल लगे हुए हैं।

तालाब में दो बखत भी हैं जिसका कलर व्हाइट है।

इस मस्जिद में टाइल्स लगा हुआ है।

इस दृश्य में एक हॉस्पिटल रूम का चित्र है।

कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

इसमें बाइक स्कूटी और स्कॉर्पियो भी है।

एल_सी_डी लगा हुआ भी है।

एरोप्लेन में इंडिगो लिखा हुआ है।

रोड का साइड में बड़ा सा फ्लैट बना हुआ है।

फूल का कलर पिला है।

एक छोटा सा घर जैसा बना हुआ दिख रहा है।

इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला चटाई बिछाया हुआ है।

दो आदमी लोग दिख रहे हैं।

यह कार को प्लास्टिक से कवर किया हुआ है।

इस दृश्य में एक बड़ा सा बस स्टैंड का चित्र है।

बस का कलर व्हाइट पिंक और ब्लू भी है।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

इस घर का कलर पीला है।

इस दृश्य में एक लाइब्रेरी का चित्र है।